झूमर है लोग यहां पर अह नाचते हुए झूमते हुए जा रहे हैं।

और व्हाइट कलर का यहां पे पोस्टर लगा हुआ है। इसपे लिखा हुआ है फेंजल--

तीन लोग खड़े हैं पंचायत कर रहे बैठे हैं बात कर रहे हैं पिंक कलर का शर्ट पेहना हुआ है आदमी ने।

सामने दो-तीन बोर्ड बने हें काउंटर बने हुए हें एक लेडीज बैठी हुई है आदमी ने व्हाइट शर्ट पेहना हुआ है।

दो बाइके रखी है आस पास यह पे बहोत सारा कुड़ा हैं।

यहां पे नाव है यहां पे बहुत सारा पानी है आसमान में पंछी उड़ रहे हैं नाव में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

एक व्यक्ति नाव चला रहा है सामने सूरज की कीरने दिखाई दे रही है।

यहां रेल की पटरी है यहां बहुत सारी ईंटे पड़ी हुए हैं।

और एक दो पंखे लगे हुए हैं रेड कलर का पीछे खंभा है मंगल सूट्स एंड फैमिली रेस्टोरेंट लिखा हुआ है।

सामने एक घर बना हुआ है है लोहे का जाल है एक बाइक रखी हुई है आस पास में यहां पे खेत है।

और उल्लू रखे हुए है। यहां पे उनका चारा रखा हुआ है खाने के लिए।

एक ग्रीन कलर की पाइप है बहोत सारी यहां पे मिट्टी है।

यहां पे बहोत सारे फ्लावर्स रखे हैं गेंदे के कमल के--

बहोत सारे फर्श पर फ्लावर्स पड़े हुए हैं पूरा पड़ा हुआ है एक ब्लैक कलर का टेबल रखा है वाइट बोरा है एक व्यक्ति जूते पहन के खड़ा है।

और नीचे यहां पे बहोत सारा पानी है और यहाँ पे झरना बहे रहा लोग यहां पे घूम रहे मौज मस्ती कर रहे--

रेड कलर का कवर है सामने व्हाइट कलर का काउंटर है।

आसमान में सफेद बाल दिखाई बादल दिखाई दे रहे हैं।

बॉटल्स हैं पैकेट्स रखे हुए हैं शॉप कीपर नीचे फर्श पे बैठे हैं।

बच्चा यहां पे खड़ा है। आस पास जंगल हैं एक पेड़ झुका हुआ है। व्हाईट कलर का घर है।